एक घर है घर में टेंट मतलब पर्ची बनी हुई है सामने एक कुर्सी रखी हुई है।

एकदम मल्टी है जो तीन चार मल्टीयाँ है और सभी मल्टीयो के खिड़कियों में आउटडोर रखे गए है।

कुछ है वन हंड्रेड कुछ नाइंटी नाइन के कुछ थ्री हंड्रेड नाइंटी नाइन के कुछ सेवन हंड्रेड सभी के प्राइज उनके कपड़ो के साथ लिखे हुए है।

एक आदमी फ़ोन में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा एक टिन सेट लगा हुआ है।

एक ऊपर बाउंडरी दिखाई दे रही है पर्ची दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे है एक डोरी गयी है एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है और सामने सीमेंट की रोड बनी --

एक बस स्टैंड है जिसमे एक बड़ी बस खड़ी हुई दी खड़ी हुई है। पूरे काले --

एक जिम है जिम में जिम का एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सारे लाइटिंग दिखाई दे रही है बलून लगे हुए है।

कांच काफी बड़े दिखाई दे रहे है अंदर एक लोगो लगा हुआ है और अंदर लाइटिंग दिखाई दे रही है कांच दिखाई दे रहा--

एक मल्टी दिखाई दे रही है और सामने काँच लगे हुए हैं।

एक गेट दिखाई दे रहा है एक खंभा दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहा है पट्टी दिखाई दे रही है हरी घास दिखाई दे रही है सामने एक खंबा भी दिखाई दे--

और भी एक मीटर रखा हुआ है तोलने के लिए भटे दिखाई दे रहे है।